यहां पंखा भी लगा हुआ है यहां बोर्ड भी लगा दिखाई दे रहा है।

बाउंड्री का कलर हरा सफेद व ऑरेंज है।

यहां जमीन के नीचे मंदिर व कई सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ छपरा रखा ऊपर दिखाई दे रहा है।

यहां की दिवाले लाल व क्रीम व हरी कलर की नजर आ रही है।

यह एक हॉल है यहां की दीवाले सफेद कलर की हैं।

यहां की दिवालों की छत पे पंखा लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे स्लाइडर भी है जो कि नीले कलर का है।

तथा यहां सफेद कलर की लाइटें भी नजर आ रही हैं।

यहां सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है इसपे काफी घास व पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यहां सामने सफेद कलर की बाउंड्री नजर आ रही है।

यहां केले का पेड़ भी लगा हुआ है और काफी अन्य पेड़ व घासें लगी नजर आ रही है।

तथा यहां काफी घासें लगी हुई नजर आ रही हैं।

यहां सामने कई सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

यहां काफी लोग बैठे और खड़े नजर आ रहे हैं।

जिस पे लिखा है श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी।